यहाँ तक पानी अपनी सीमा से पार हो चुका है। बसें जगह-जगह खड़ी हैं टैक्सियां भी खड़ी हैं। मकानों में पानी --

तमाम जोड़ों-जोड़ों पर इसके सरिया होता है।

देने का और लेने का कार्य करते हैं। बहुत ही सुलभ--

ये चिड़ियाघर है। इसमे तमाम तरीके के जानवर पाले जाते हैं। लोग आते हैं।

ये वाटरपार्क है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। स्नान भी करते हैं। यहाँ पर चारों तरफ से अच्छे से सुन्दरता से सजाया गया है।